यह एक म्यूजियम की तरह दिख रहा है यहाँ बहोत अच्छा है।

कुछ वाहन चल रहे है एक लड़की रोड क्रोस कर रही है यह एक लग रहा है स्टेट बैंक का यह बहुत सुंदर है।

भी होगी तो मैं इसीलिए कोट लगाना चाहूंगा।

यह एक बहोत सुंदर दृश्य लग रहा है। इसमे बोहोत सारे पथर दिख रहे है।